साइकिल दीवाल से टिकी हुई टंगी है और एक बाउंड्री वॉल बनी है जिसमें छोटा-सा गेट लगा हुआ है।

पार्क के एक साइड एक लाल कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही है पार्क के बीच-बीच से एक रास्ता गुजर रहा है।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

इसमें कुछ सफ़ेद कलर की है कुछ सफ़ेद और काली है कुछ पूरी काली हैं नीचे घास लगी हुई है ऊपर से बिजली की बड़ी लाइन गई है जिसके पीछे-नीचे बहुत पेड़ लगे हुए है नीचे छोटी-छोटी घास --

शोरूम दिखाई दे रहा है जहाँ बहुत सारी बाइके खड़ी हुई हैं ऊपर रंग बिरंगे सितारे टंगे हुए हैं नीचे लाल कलर की मैट बिछी हुई है पीछे कुछ बंद शटर दिखाई दे रहे है और बहुत सारी लाइटिंग जल रही --